इस फोटो में एक दुकान का सामने का हिस्सा दिख रहा है।

माले एक लोहे के फ्रेम पर लटकी हुई है।

मुझे एक पीली स्कूल बस दिखाई दे रही है।

दीवारों का रंग क्रीम या हल्का पीला है।

सामने कई वैन मिनी बसेस और टैक्सीयां खड़ी हैं।

आसमान नीला और साफ है।